और घर जैसा बना हुआ है। उपर में इसका शेड बना हुआ है जो कि एलवेस्टर शीट से बने हुए है।

नमाज़ भी पढ़ने जाते हैं और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसके सामने में ये कुछ चीज़ें रखे गयी हैं।

और रॉ मटेरियल डाल रहे हैं मतलब कच्चे माल डाल रहे हैं जिससे वो --

और इसमें जो मैन है वो सिंपल एक चश्मा लगाया हुआ है और सिंपल कैज़ुअल ड्रेस में है।

ध्यान से देख रहे है उसको कुछ क खराबी है उसको बना रहे है और ए सिंपल सा गैरेज है।